ये ये बोहोत ही अच्छा देखने में लग रहा है। अंदरित कर रही है जो सलवार जैसा जो पहनी हुई वो भी काफी अच्छा लग रहा है। बोहोत ही अच्छी तरीके से सिखा रही है अपनी स्टूडेंटों को इस तरह से देखने में लग रहा है।

देखिये बोहोत ही अच्छी तरके से इस मंदिर को डिज़ाइन किया गया है| जो बोहोत ही अच्छा देखने में लग रहा है इसके ऊपर भी पे पेड़ो काफी सुन्दर देखने में और इस तरह से जो बिछाया गया है टाइल्स मारबल से बनाया गया है इस मंदिर को काफी अच्छा काफी सुन्दर लग रहा है और बोहोत ही अच्छी मंदिर है।

बत भी वी.आई.पी. भी आई लोग आते हैं यहाँ खाने --